इस स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठी हुई है और उनके पास कुछ व्यक्ति खड़े कन्यादान कर रहे हैं।

इन दुकान के बाहर कुछ बाईकें बहुत सारी खड़ी हुई है।

यह एक पत्थरों की नदी है इस नदी में कुछ पानी का बहाव चल रहा है।

और बराबर में दो खेत हैं। इन खेत में एक में टंकी लगी है और हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

तो कुछ तार एक हेलिमेट बहुत सारा सामान इस दुकान के अंदर रखा हुआ है।

और ऊपर छत में कुछ लाइटें भी नजर आ रही है।

और देखने में बहोत ही सुंदर है।

और इस कंपनी के अंदर कुछ मशीन है जिनका कलर ब्लू व्हाइट है।

और कुछ चेयर पड़ी है ब्लैक कलर की और यहां पर बैठे कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं।

बाहर एक बोर्ड भी लगा है जिसपर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है।